यहां पर पानी नजर आ रहा है पहाड़ पहाड़ों पानी के पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर कैटी वाला रेस्टोरेंट की नजर आ रही हैं व यह बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है।

लोर्ड प्रेयर इंग्लिश में लिखी नजर आ रही है।

यह तस्वीर आर्यन मॉडल स्कूल की नजर आ रही है यह स्कूल --

वैरायटी मिलने का एक मात्र स्थान नजर आ रहा है यह दादरी का नजर आ रहा है।

मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है।

सीमेंटेड थम्स नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर किसी सेमिनार हॉल की नजर आ रही है यहां जो कि एक इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में--

यह तस्वीर एक डब्ल्यू_एस_पी_एल प्लांट टू की नजर आ रही है।

यह यहां पर एक बच्चे और एक शिशु की भी फोटो नजर आ रही है।

कॉफी के कप को लेकर हाथ में खड़ा है।

अंदर नीले रंग के टेबल दिखाई दे रहे हैं वे काले रंग की कुर्सियां नजर आ रही हैं।

व हरे रंग के पेंट से और सफेद रंग के पेंट से इसके ऊपर डेकोरेशन कर रखी है व इसको बहोत सुंदर सजाया गया है।

और तक्षक अस्पताल की भी नजर आ रही है।

यहां पर नारियल के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं पीछे से सूरज चारो तरफ रोशनी फैलता हुआ नजर आ रहा है।

यह तस्वीर में लोहे से बने जाल की नजर आ रही है।